यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क काफी बड़ी दिखाई दे रही है सड़क पर एक फूलो की दूकान दिखाई दे रही है एक स्टूल रखा हुआ दिखाई दे रहा है बोरियां रखी हुई है।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

यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क काफी बड़ी दिखाई दे रही है सड़क पर मिट्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही है ये ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

ये कुत्ता सोता हुआ दिखाई दे रहा है कुत्ते को हरे रंग के कपडे में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है पास में इंजेक्शन पड़े हुए दिखाई दे रहे है दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है जिन्होंने अपने मुँह पर मास्क --

यहाँ पर एक बड़ी-सी दूकान दिखाई दे रही है ये दूकान काफी बड़ी दिखाई दे रही है दूकान में कांच लगी हुई दिखाई दे रही है दूकान पर एक बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ है जिसका रंग लाल दिखाई दे रहा है ।

तालाब में एक नाव खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तालाब के किनारे एक पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पत्थर पर एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तीन मूर्ति तालाब के अन्दर जाती हुई दिखाई दे रही --

ये साडी पहनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर सीढ़ीयां बनी हुई दिखाई दे रही है ब्लैक कलर का स्पीकर दिखाई दे रहा है और पिंक कलर का टेंट भी दिखाई दे रहा है।

पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का रंग पीला और लाल नज़र आ रहा है ऊपर आसमान का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

खीरा गाजर बैंगन सभी दिखाई दे रहे है सब्जियों का कलर हरा दिखाई दे रहा है शकरकंद का कलर लाल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक दूकान दिखाई दे रही है दूकान काफी बड़ी दिखाई दे रही है दूकान में काफी बड़ी आलमारी रखी हुई दिखाई दे रही है एक रस्सी बंधी हुई है।

पर मेंहदी सुपारी कॉफ़ी क्रीम सभी सामान टंगा हुआ दिखाई दे रहा है पेम्पेर्स भी दिखाई दे रहै है बौटले दिखाई दे रही है जोकि --

ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जोकि पीले कलर का दिखाई दे रहा है जिसपर श्रधा स्पोर्टस एवम मेंस वियर लिखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान में काफी सारा सामान जमा हुआ दिखाई दे रहा है सीढियां दिखाई दे रही है पाइप टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हरे रंग की कारपेट बिछी हुई है और बच्चे उस पर बैठे हुए दिखाई दे रहै है कुछ बच्चों के आगे कॉपीयां रखी हुई दिखाई दे रही है और आगे भी एक औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही है ।

और अपने और बच्चे ने हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे है बहुत सारी भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई दिखाई दे रही है सभी --

रंग का दिखाई दे रहा है ऊपर नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर फ्रेशेर लिखा हुआ --